यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं जो की लोगों को खड़ा होने के लिए बनाए गए है ताकि इस बिल्डिंग में काम जारी रखा जा सके इस बिल्डिंग में पेंट भी हो चूका है और लाईट फिटिंग भी हो चुकी है इसके ऊपर के माल के बिल्डिंग शायद बन रहे--

'' जिसमे सी.बी.एस.इ. ऐट नाइन टेन्थ मैथ्स एण्ड सायन्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ''

दीवालों को कलर सफेद है हर दीवाल पर पोस्टर लगा हुआ है और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है यहाँ सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है और उसके साइड पे बहोत सारी स्कूटीयाँ खड़ी हुई हैं।

हमे यहाँ एस.बी.आइ. बैंक का लोगो दिख रहा है और एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

हमे यहाँ कुछ मेडिसिन्स की दवाइयां शॉप नजर आ रही है और एक बिल्डिंग नजर आ रही है कुछ खींचे हुए तार नजर आ रहे है।

यहाँ हमे एक विशालकाय बिल्डिंग नजर आ रही है यह एक प्रयोगशाला की तरह हमे दिख रही है जिसमें सं सं संस्थान विभाग भी लिखा हुआ है ।

हमें यहाँ एक मस्जिद का गेट दिख रहा है और बहुत सारे तार यहाँ से खींचे हुए हैं मस्जिद का रंग सफेद हरा और लाल है और ग्रीन कलर से इसकी दीवार पोती गयी है।

यहां एक ऑटो नजर आ रहा है जो की इंसानों को ढोने के काम में आता है उसके पीछे बहुत सारी विशाल काल बिल्डिंग बनी हुई है एक रैलिंग बनी हुई है ऑटो और बिल्डिंगों के बीच में और अह ऑटो सैट रखा हुआ है।